महिला महाविद्यालय है ये बदायूँ में है। गेट इसका लोहे के द्वारा बनाया गया है। काफी मजबूत है।

सरकारी करमचारी के ऑफिस है ये। यहाँ पे विद्युत् का --

देखो ट्रक भी जा रहे हैं।